ये एक शादी का होटल दिखाई दे रहा है।

अंडे के ट्रे रखी हुई है अंडे रखे हुए हैं।

एक बहुत बड़ी फूलों की मार्केट है इसके अंदर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं फूल की माला लगी हुई है।

नीचे हरा भरा घास दिखाई दे रहा है रेतील मिट्टी है।

बच्चों के गले में टाई पड़ी हुई है।

एक टी_वी रखा हुआ है बलफ लटका हुआ है।

दुकान के बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है।

मेज के ऊपर बहुत सारी भगवान की तस्वीर रखी हुई है।

बाहर कुछ लिखा हुआ है साइकिल खड़ी हुई है डस्टबिन है।

पर बहोत सारे लोहे के पाइप लगे हुए हैं।

काउंटर है कांच के शीशे लगे हुए हैं।

पीछे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं कूलर रखा हुआ है नीचे मैट बिछी हुई है।

इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर बहोत सारे रूम है।

आदमी के हाथ में थैले दिखाई दे रहे हैं।